या एक बहुत बड़े बिल्डिंग के नीचे वाला फ्लोर है और उसके अंदर एक गाडी खड़ी है ।

यह किसी फूल की दूकान की तस्वीर है उसके सामने बहुत सारा माला टंगा हुआ है।

कुछ माला सफ़ेद है और कुछ माला अनेक रंगो के है।

यह किसी सैलून के अंदर की तस्वीर है जिसमे कुछ व्यक्ति अपने बाल कटवा रहे हैं।

सामने टोकरियों में मछलियाँ रखी हुई है।

यह मछली दुकान की तस्वीर है जिसमे बड़ी-बड़ी मछलियाँ दिखाई दे रही है।

यह मछली बाजार है जिस मै कुछ व्यक्ति मछलिया बेच रहे है और सामने बल्ब भी लगा हुआ है।

यह किसी दुकान के अंदर की तस्वीर है जिसमें बहुत सारे खिलौने टंगे हुए हैं और कुछ डिब्बों में सामान भी रखे हुए हैं।

जिसमे एक व्यक्ति बगल में बाल्टी रखे हुआ है और एक तराजू है।